पुलिया एक रोड के द्वारा बनाया गया है।

यह एक एच_डी_एफ_सी का बैंक है।

ये पार्किंग में कुछ बाइक सकूटी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

गौतम बुद्ध की फेस अंदर के छत के ऊपर बनाया हुआ है।